यह एक पुराने जमाने का एक बेहतरीन महल जैसा दिखाई देता है उसके बगल में जो पेड़ है --

ठंडी का समय है टोपी लगाया हुआ है और जाकेट भी पहना हुआ है शूज भी पहना हुआ है।

यहां पर कुछ मछलियां है जिसको एक व्यक्ति काट रहा है दूसरा व्यक्ति उसको --

खुला आसमान है नीला आसमान है नीचे बहुत सारे लोग जो है बैट बॉल खेल रहे है।

बहुत ही अच्छा लग रहा है बगल में घर भी बने है ।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमे में बहुत ही अच्छी तरह से लाइटे लगा हुआ है।

और कुर्सियाँ रखा हुआ है लोहे का है और कुछ जहाँ पे खाना खाते हैं वहाँ पर ऐसे मेज टाइप का बना हुआ है।

पर लटकाया गया है और लोहे का बना हुआ है और इसके चारों तरफ ब्राउन कलर की धारीदार बहुत अच्छा बनाया गया हुआ है।

और सफेद कलर की दीवारे है बगल में पंखा लगा हुआ है ताकि जो प्रचार करता है उसको हवा लगे।

वो कुछ बोल भी रहा है और डांस भी कर रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा हैं ।

यह एक बहोत पुराने ज़बाने की दीवाल है।

जो पत्थर से बना हुआ है दीवार के अगल-बगल बड़े-बड़े पत्थर है छोटा सा पेड़ है खुला हुआ आसमान हैं।

यह एक मछली मार्केट है।

लकड़ी की कुर्सियाँ रखी हुए है उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है ए.सी. लगा हुआ है और उसके --

यह एक मंदिर है जिसको कई शेप में बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है।